अम रंग-बिरंगे गुब्बारे लिए एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है बहोत सारे लोग दिख--

यहाँ पर एक बड़ा-सा रूम दिखाई दे रहा है एक क्रिश्चियन महिला खड़ी दिखाई दे रही है कुछ बच्चे क्राफ्ट --

बाल्टी दिखाई दे रही है दीवाल में टाइल्स लगी दिखाई दे रही--

केरी गई दिखाई दे रही है।